एक कांच का टेबल लगा हुआ है टेबल के ऊपर गुलाबी और नारंगी रंग के डब्बे रखे हुए है।

यहां एक घास का मैदान है यहां पर कुछ लोग नीले रंग की पट्टी बिछाकर उस पर--

और नारंगी रंग के फूल लगे हुए हैं।

खंडहर के बराबर में सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों के पास एक बड़ा सा पेड़ खड़ा है।

और इसके चारों तरफ एक स्टील की रेलिंग लगी हुई है।

यहां पर एक तालाब बना हुआ है जिसका पानी सफेद दिख रहा है और इसके --

टाइल्स का रंग हरा है और यहां पर एक काले रंग की बाइक भी है।

और यहां पर एक व्यक्ति ने बैंगनी रंग की शर्ट पहनी हुई है।

और उसके मेंन गेट पर नारंगी रंग के परदे लगे हुए है।

और इमारत के ऊपर एक पत्थर की रेलिंग भी बनी हुई है।